कोई दिख नहीं रहा है एकदम खाली है।

दो चार आदमी है बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे आदमी कुछ बातें कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं।

और बहुत सुंदर लग रहा है।

यहां पे एक नदी है। उसमें पत्थल है। वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है।

वे फोटो घिचवा रहे हैं क्लिक करवा रहे हैं।

ये एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा है ये कहां का है मुझे पता नहीं।

फिलहाल में पच्चीस दिसंबर आया था उसमें सब चर्च में गए थे।

यहां पे लोग घूमने टहलने खेलने आते हैं हम खुद गए हैं वहां पे खेलने के लिए --

ये बहुत अच्छा सीन है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

नदी के किनारे यहां पे बालू है यहां पे दो चार आदमी दिख रहे हैं लगता है नहाने जा रहे हैं।

यह एक फैक्ट्री के पीछे का सीन है। यहाँ पर बड़े-बड़े घास लगे हुए हैं।

ये किसी चौराहे का सीन है ये गोरखपुर का लग रहा है।

पच्चीस सितम्बर पच्चीस दिसंबर को सब आये थे लगता वही का है। क्रिश्चियन लोग सब पूजा कर रहे है ।